पानी भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर यहाँ पर लाइट भी दिखाई दे रही है तुरी भी दिखाई दे रही है सड़क भी दिखाई दे रही है पेड़ पौधे घर आसमान सब कुछ भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर भगवान कि मूर्ति दिखाई दे रही है बहुत अच्छी है सफेद कलर की है और मूर्ति मे अच्छा कलर भी पोता हुआ है बहुत अच्छा भी लग रह है।

बादल भी दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ पौधे भी लगे है यहां पर बिजली का खम्बा भी लगा हुआ है यहाँ पर यहां पर शराब भी है।